वहाँ पर दो आदमी काम भी कर रहे है ये एक राशन दुकान लग रहा है सामने एक कुर्सी भी रखी हुई है।

ये एक शॉपिंग मॉल है यहाँ पर बहुत सारे वेजीटेबल रखे हुए है और फ्रूट्स हैं।

यहाँ बहुत सारे लाल-लाल कलर के एप्पल है और ऑरज भी हैं।